बहुत बढ़िया लग रहा देखने में इनका नाव तमामन लगी है घाट किनारे सब बइठें हैं। बढ़िया नदी है।

यहो बहोत बढ़िया स्टेशन है। हमारी समझ से यह बनारस स्टेशन है। मँड़ुआडिह है बनारसे लागी रहल --

कोनों कैफै क लगी रहा लेकिन देखे में बड़ा बढ़िया एजुकेशनल लगी रहा। हमे समझ से कोनों ऑफिस कयाए औ चेयर बड़ी मारू रखी हैं एकदम महंगी महंगी। दू तीन लोग हैं एमे दुई लेडिस और एक जेन्ट्स नजर आ रहे हैं।

यहाँ बनारस हिन्दी यूनिवर्सिटी अंदर एक बड़ी बढ़िया बिल्डिंग है और नारियल के पेड़ लगे लेकिन ऐसे नारियल के पेड़ इ सब शो ऑफ मे लगे रहथ है इनमें नारियल निकारथ नहीं है ।

कोनो स्कूल क्लासरूम के ह आशुतोष मेमोरियल स्कूल के है भईया आजकल इंग्लिश मीडियम चली गए है लइकन के बढ़ावा दिए खातिर लेकिन अच्छी बात है भईया लेकिन गुरुकुल का भी ध्यान दिए के चाही अपना अपना लोगन के बढ़ाना चाहिए थोड़ा बहुत।

साड़ी ऊपर कहा दिखावा तुम का पंचेन के | ठीक रहत बढ़िया रहात।

गेम हम फ़ोटो जो है बाहर से खीचां है | टॉवर एक नजर आ रहा है पूरा ग्राउन्ड नजर आ रहा है और तमाम लोंडे नजर आ रहे हैं ।

यहाँ वो एक स्पोर्ट्स की दुकान है। इमे स्पोर्ट्स समान मिला करत ही ।

चार बजा हुआ है। पीछे पीछे है।

। इलाहाबाद मे यही तरह एक ठे रेस्टोरेंट है। बाटी चोखा वाला काफी बढ़िया देखने मे लग रहा लेकिन देहाती लुक एक दम नजर आ रहा है।

इक ल्यु आ एक ऐकडेमिक ब्लोक नंबर स्कूल बसे है।

है और इ बस है जो नि स्कूल बस ये रहती थी ऐ जाते जो न अ अ बग रहत पिली पिली बस है।

यह बढ़िया स्कुल देखने मे लगी रहा देखो। ऐसा कोलेज होना चाहिए बढ़िया कौनो डिग्री कोलेज जैसा लगी रहा है और यहाँ पूरा फेकल्टी है।

घडी लगी है जेमा चार बजके दस पंद्रह मिनिट होइ रहा।